इस पार्क का मंजर है जहां तकरीह के लिए बहुत सा सामान रखा हुए हैं झूले भी लगे हुए हैं और पानी भी नजर आ रहा है।

का समय है हर तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई है किसी बाग का मंजर है एक तरफ नहर भी बह रही है।

जहां पर कारों की धुलाई की जाती है वहां पर कोई भी कार मौजूद नहीं है एक तरफ मशीनें लगी हुई हैं।

रात का समय है किसी कार पार्किंग का मंजर है जहां बहुत सी कारें खड़ी हैं उनमें से अक्सर कारों का रंग काला है।

शाम का समय है और अंधेरा छा रहा है एक बड़ी सी इमारत का बड़ा कमरा नजर आ रहा है जिसकी छत सुबह होती है।